ब्लैकबोर्ड भी दिख रहे हैं और यहां पे बहोत सारे पंखे दिख रहे हैं।

और यहां पे डस्टबिन रखा हुआ है और ये यहां पे आदमी बैठे हुए हैं।

ये यहां पे आप देख सकते हो ये--

लाइट लगी हुई है और यहां पे ये गुब्बारे दिख रहे हैं और यहां पे ये बहुत सारी--

और ये यहां पे पानी की टंकी भी दिख रही है।

ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक टंकी रखी हुई है।

टं पानी की टंकी दिख रही है और यहां पे--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

और यहां पे आप देख सकते हो घास भी दिख रही है।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

ये औरतें देख रही हैं और यहां पे आप देख सकते हो बहोत सारे पेड़ ही पेड़ देख रहे हैं।

ये यहां पे मंदिर सा भी बना हुआ है और आसमान भी दिख रहा है।

शुद्ध वेज ढाबा लिखा हुआ है और यहां पे--